यह चित्र किसी आइस क्रीम पार्लर का है जिसका नाम विशाखा डेयरी पार्लर है।

जो कि एक चर्च के बहार खड़े हुए हैं और ये लोग बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं।

यह दुकान किसी मोबाइल के सिम कार्ड का दुकान दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर मोबाइल से संबंधित बहुत सारे सामग्री रखी हुई है।

इस चित्र में मैं एक लड़के को देख पा रहा हूँ बलून देख पा रहा हूँ और अन्य कई प्रकार की बलून देख पा रहा हूँ।

जिसके बाहर बहुत सारे लोग बहुत सारी बाइके अथवा एक एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई है।

--अथवा पीछे एक व्यक्ति है जो की नाव चालक है।